यह एक स्कूल का कार्यक्रम है। जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी त्योहार के अवसर पर किया है।

यह एक जिम की तस्वीर है जहाँ एक सफेद कलर की बानियान पहेने लड़का जिम कर रहा है और जिस--

यह एक किश्ती दिख रही है। जो नदी में तैर रही है | इसमे काफी लोग इस पर सवार है जो की नदी को किनारे की तरफ ले जाने के लिए कार्यरत प्रयास कर रहे हैं ।

सजावट के दोरान इन्हे कर लिया जाता है और पीछे कुछ तरफ में हॉल है जहा अंदर गेस्ट हाउस है और --